इसने लाल टी शर्ट पहना है।

बहुत ही खूबसूरत तरीके से नृत्य कर रही है।

टेबल के ऊपर में बहोत सारी चीजें रखे हैं।

जो कुछ चीज़ें को देख रहे हैं।

इसमें एक बहोत बड़ा सा पोस्टर टंगा है जिसमें लिखा है ओपनिंग टी_सी_यम सोसर अरेना ।

एक रेस्टुरेन् है जहाँ पर बहोत सारा टेबल्स और चेयर्स रखा है।

एक बड़ा सा पेट्रोल पम्प है जहां पर तीन चेयर है तीन गाड़ी खड़ा है।

एक इसके बगल में बहुत सारे पेड्स है।

रास्ते के बीचो बीच में एक गाय जा रहा है।

एक होटल में बहुत सारी चेयर्स रखा है टेबल्स रखा है।

एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही सुंदर है।

सभी लोगों का चेहरा ढका है।

ठीक नजदीक में डेकोरेशन किया गया है।